उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

उसके पास में ट्रक खड़ा हुआ है पेट्रोल पंप पर आदमी बैठे हुए हैं पेट्रोल पंप के पीछे एक माकन है वाइट कलर का।

यह एक सब्जी मंडी है जहाँ पर सभी ने अपनी फल फ्रूटस और वेजिटेबलस की शॉप लगायी हुई है |

जहाँ पर छात्र-छात्राओं द्वारा प्रतियोगा परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा दी जा रही है।

जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है यहाँ लैपटॉप रखा है ।